चार पाँच सीढ़ीओ के साथ में छोटी-छोटी दीवारे नज़र आ रही है जो की पिले हरे --

मकान देखा जा सकता है जिसके पास ही दो बड़े-बड़े--

दे रही है। ऊपर की तरफ आसमान भी साफ देखा जा सकता है तथा साथ ही में थोड़ी सी जगह खली भी --

तथा साथ ही में बाहर की तरफ चार सेर की मुर्तिया लगी हुई है साथ ही में एक फर्श भी नज़र आ रहा है।

ये एक मूर्ति साफ़ नज़र आ रही है जिसके ऊपर सोने का रंग का मुकुट लगा हुआ है।

कुछ हरे भरे पेड़ - पौधे नज़र आ रहे है जिसके पास ही में एक --

आ रहै है तथा साथ ही में एक और नदी भी नीचे की तरफ नज़र आ रही है और नदी के पानी पर --

पीछे की तरफ सफेद रंग की लाइटिंग दिखाई दे रहे है तथा ऊपर के तरफ काले रंग की टिन लगी हुइ है।